एक गैरज है जिसमें एक सफ़ेद कलर की गाड़ी को सही किया जा रहा है उसका आगे वाला टायर खोल दिया गया है और उसके बोनट में इंजन में कुछ एक आदमी कर रहा है।

कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिसमे तीन आदमी है। एक आदमी मशीन के पास खड़ा है दूसरा आदमी छ --

देख रहे हैं और उसका आगे वाला टायर खोल दिया गया है। बउनट खोल दी गई है और ब्लू कलर के ड्रेस पेहन रखे हैं दोनों आदमी ने।

और उसमे से तीन सफ़ेद है एक लाल कलर के है और कुछ लोग ऊपर खड़े हो कर देख रहे है बतख को और पानी नदी में भरा है ।